यह एक पार्क है यह पार्क बहुत ही सारे बच्चे का खेलने जैसा है यहाँ पर बहुत ही सारे आदमी आते हैं और यहाँ पर बहुत ही सारे जैसे झूले बिच्छ्लने वाले बहुत ही सारे तरह-तरह की घूरने जैसे --

यह एक घर है। यह घर पर छत पर ढ़लाई चल रहा है। यहाँ पर बहुत ही सारे सिमेन्ट दिए हैं। बहुत ही सारे तरह-तरह की मशीन भी लाई गई है। यहाँ पर तीन-तीन आदमी काम कर रहें हैं। बहुत ही बड़ा घर है। वहाँ पर बहुत ही पट्टा और मशीन से बन रहा है।

यह एक स्कूल है। यह स्कूल पेपर में बहुत सारे लड़के को ड्राइंग करने के लिए बोला है। इ सब लड़के चार्ट पेपर में ड्राइंग कर रहें हैं बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे ड्राइंग कर रहें हैं।